यहाँ पे लग रहा है मुझे की शादी का फंक्शन हो रहा है इस ढंग से इसको बनाया गया है यहाँ पे नाच गाना सब होता है उसके बाद खाने पीने का प्रोग्राम रहता है।

और यहाँ पर सभी ईस्ट मित्र लोग उपस्थित होते हैं और शादी को सुचारू रुप से संपादित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ऐसा लग रहा हैं।

यहाँ पे लोग बजाते हैं और कुछ